आसमान दिखाई दे रहा है।

यहाँ हमें एक बोहोत बड़ी नदी दिखाई देख सकते हैं।

पीछे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

जहाँ पर दो गाडियाँ खड़ी हुई हैं।

सामने एक काउंटर दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक कम्‍प्‍यूटर रखा हुआ है और --

और आस-पास लोहे के एंगल्स लगे हुए हैं।

और एक चिडि़या बैठी है ऊपर बोहोत छोटी सी ब्यूटीफुल सी।

कि एंगलर्स लगे हुए हैं।

तीन पिलर्स दिखाई दे रहे हैं।

और गोल्‍डन कलर दिया हुआ है।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

और इसके आस-पास लोहे के एंगल्स लगे हुए है। पीछे घर दिखाई दे रहा हैं।

चेयर्स रखी हुई हैं और एक बोहोत बड़ा टायर रखा हुआ है और ये बॉक्‍सेस पर --